साइड में बहुत सारा सामान सब रख के है जोकि बॉक्स में है।

मशीन सब भी रखे हैं और वहां में खिड़की और वहां में पर्दा सब लगाके है जो की ब्लू कलर में है।

ये फोटो में मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जहां में पीछे में शीशा से बना हुआ एक बाथरूम दिखाई दे रहा है।

सामने एक रस्ता है जिसका बगल में बहोत सारा फूल लगा के है।

पीछे में एक घर है जो कि टीना से बना है और वहां में बहुत सारा बेंच भी दिखाई दे रहा है।

दो टेबल है और एक टेबल का ऊपर एक बैग है।

सामने में एक दरवाजा है और दरवाजा का पीछे रोड में गाड़ी और स्कूटी सब भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में मुझे एक ट्रेन दिखाई दे रहा है जो कि ब्ल्यू कलर में है और बीच में येलो और वाइट से लाइन लगा के है और वहां में इंडियन रेलवेज लिख के है।